इस तस्वीर में आपको एक कमरा दिख रहा है जहां पर--

एक मूर्ति जैसा रखा हुआ है।

बड़े-बड़े दरवाजे हैं खिड़कि है जालियां हैं रोशनी आ रही है और --

एक बड़ा सा ट्यूब पड़ा हुआ है स्विमिंग पूल के किनारों पर।

जो कि फूलों से सजावट है बहुत सारी सजावट है।

आपको एक बड़ा सा पेट्रोल टैंक दिख रहा है--

हाथ में गैस वाले बंब उड़ा रहे हैं रंग दिख रहा है सफेद पर्दे लगे हुए हैं।

ये बहुत ही खूबसूरत होटल दिख रहा है।

तस्वीर में आपको एक बड़ा सा शॉपिंग मॉल दिख रहा है जिसके अंदर एक बड़ा सा शोरूम दिख रहा है जो एक रिलायंस ज्वेल्स का है।

शेड डला हुआ है बड़े दरख्त दिख रहे हैं ।

उसके किनारे पर बड़े-बड़े खजूर के पेड़ लगे हैं जो कि तालाब में दिख रहे हैं।

साफ बादल दिख रहे हैं रोशन दिख रही हैं।

कांच के डब्बो में रखे हैं बिस्किट दिख रहे हैं।

इस तस्वीर में आपको एक बड़ा सा ब्रिज दिख रहा है।

जो बहुत बड़े-बड़े पिलरों पे बना हुआ है।

ये एक बड़ा सा शोरूम है जहां पर खूबसूरत महंगे महंगे गाउन दिख रहे हैं।

ट्रक जा रहा है एक बड़ा सा ट्रक दिख रहा है।

पहाड़ों पर घांस दिख रही है।

पीछे बोर्ड लगा हुआ है बहोत बड़ी सी टेबल दिख रही है।

तस्वीर में आपको एक बड़ा कॉम्प्लेक्स दिख रहा है।